यहां पे मुझे एक बड़ासा रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

और कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक छोटा सा बैनर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है जिसमें व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और बहुत सारे बैनर दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ फोटोस बने हुए हैं।

और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और एक स्कूटी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और एक ऑटो दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और येलो कलर का है।

और बहोत सारे बाइके दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है और सिल्वर कलर की है।

और बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और ब्लैक कलर की है।

यहां पे मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो सामने में खड़ा है जो ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ है और वाइट कलर का पैंट पहना हुआ है और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे फूलें दिखाई दे रही है जो ऑरेंज कलर की है और वाइट कलर की है और येलो कलर की है।

और कुछ सर पे गजरा लगा हुआ है जो वाइट कलर का है और कुछ नथ दिखाई दे रहे हैं जो गोल्डन कलर के है।

और कुछ टेबल दिखाई दे रहे हैं जो कुर्सिया जैसी है जो मिट्टी कलर के हैं।

और बहुत सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं जो क्रीम कलर के हैंऔर मिट्टी कलर के हैं।